इसमें पेंटिंग लगा हुआ है ए_सी है।

खड़े है एक आदमी काउंटर पे खड़ा है।

जहां लोग जाल में मछली मार रहे हैं तीन आदमी है।

एक आदमी ढोल लेके खड़ा है एक आदमी जा रहा है।

पर चौकी रखा हुआ है बनाके।

सामने काउंटर है यहां एक कालकिलिउटर है।

जहां बहोत सारे लोग आए हैं।

नीचे हरा कलर का कारपेट बिछा है बहोत सारे लोग बैठे हैं कुछ लोग खड़े हैं।

जहां ग्रीन कलर का एक शेड है साइड में बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर पानी टैंक है।

और लोहे का सीढ़ी है और पाइप लाइन बना हुआ है साइड में एक छोटा सा गार्डन है।

यह एक स्टेज है यहां प्रोग्राम होने वाला है।

जहां साइड में हरे भरे घास है पेड़ है।